इस तस्वीर में मुझे एक बाइक का शोरूम दिख रहा है और इस बाइक के शोरूम में बहोत सारी बाइक दि दि--

एक रेड कलर की एक्टिवा भी खड़ी हुई है जो की देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है।

और आस पास बड़े बड़े पेड़ भी लगे ह--

गमले में भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं।

दो आदमी भी खड़े हुए हैं और एक पेटी के--

इस चित्र में मुझे एक कार पार्किंग स्पेस नजर आ रहा है जिसमें बहोत सी कारे पार्किंग की गई है और एक--